यहाँ पे एक सेद लगा हुआ है जो टीन का है और उसपे मरक्यरयाँ लगी हुईं हैं।

और सड़क पे एक आदमी चल रहा है और एक वाइट_कलर की कार दिख रही है और दूसरे तरफ एक घोड़े का स्टेचू है जिसपे कोई बैठा हुआ है।

और यहाँ पे एक ए_सी नज़र आ रहा है और बहुत सारे डेस्क बने हुए है जो प्लाईवुड है और कही-कही कुछ लोग बैठे हुए है।

जो येल्लो रेड एंड ग्रीन कलर के है और यहाँ पे एक स्विमिंग पूल है जहाँ तीन बच्चे नहा रहे है।

ग्रिल लगा हुआ है और एक ग्रिल बाहर रखा हुआ है।

ये एक रेस्टुरेंट है जिसके अंदर एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ है।

यहाँ तीन लोग बैठे हुए है और कुछ खा रहे है।

यहाँ पे सड़क दिख रही है जिसके दोनों साइड बिल्डिंग्स नज़र आ रहे हैं।